साइड में आदमी यहां खड़े होके देख रहे हैं ऊपर एक सनरूफ है।

सीढ़ियां बन रही हैं सामने एक हरा मैदान है जिसमें बच्चे खेल रहे है।

देवी मुख लाल इंटर कॉलेज महाविद्यालय इस का नाम है।

ये दृश्य एक ऐसा लग रहा है जैसे सभी बच्चों के एग्जाम चल रहे--

यह देखने में बहोत सुंदर लग रहे हैं ये दृश्य एक मंदिर का है।

और यहां पुराना लोहा कटता है ये दृश्य बिल्कुल कारखाने की तरह है।

यह एक होटल लग रहा है जहां सामने एक काउंटर है जहां लिख रहा है मे आई हेल्प यू ।

एक नई दुकान खुली है जहां काफी सारे गुब्बाड़े लग रहे हैं ये देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा हैं दो सिस्टम रखे हुए हैं।

यहां सामने एक टीवी लगी हुई है सामने ट्रॉफीज रखी हुई हैं।

एक बंदा यहां खड़ा है इस कार इस शॉप का नाम वेलकम स्मार्ट वर्कशॉप है यह--

और यहां काफी सारी औरतें पूजा के लिए बैठी हुई हैं जो सारा श्रृंगार करके बैठी हैं।

सामने पेड़ दिख रहे हैं और ऊपर से तार जा रहे हैं और ये आसमान दिख रहा है।

यहां अभी काम चल रहा है यहां काम चलने के बाद एक बिल्डिंग बनेगी।

ये एक आर्डर देने वाली जगह है।

यह एक ग्रीन कलर की मैट बिछ रही है चारों तरफ से इसमें परदे लगे हैं गुलाबी कलर के उ--

यहां रेस्टोरेंट का नंबर लिखा गया है उन्होंने ये बताया है कि इसका होम डिलीवरी है पिज़्ज़ा वाले के दो नंबर है इसका नाम पिज़्ज़ा किंग फूड रेस्टोरेंट है।

यह एक पिंजडे में बंधे दो पंछी है जो--

इसमें एक पीला सा सिलेंडर बड़ा सा रखा हुआ --

एक टेबल है इसमें कुछ ऑफिस का सामान रखा हुआ है।

स्टे योर बॉडी विद अस यह हमारी बॉडी बनाने के काम आएगी यहां जाके लोग अपनी बॉडी बनाते हैं ये--

यहां खाने का इंतेजाम किया गया है ये देखने में बहोत ही शानदार है।

यहां स्कूटी बिकती है एक वाइट और काले कलर कि स्कूटी खड़ी है।

ये ब्राउन कलर का है इसमें थीम है नीचे वाइट कलर की मार्बल लगी हुई है।

इस मछलियों को छू कर देख रहा है कि मछली कैसी है कैसी नहीं है।

पेड़ के नीचे ट्रैक्टर खड़ा हुआ और यह एक गांव का दृश्य लग रहा है।

साइकिल यहां साइकिल ठीक होती है इन दोनों का फेस नहीं दिख रहा है औ--

फिर उसके बाद इसने एक अपनी तस्वीर खिंचवाई जिसमें इसने अपना मुंह छुपा दिया--

यह कोई नेता की तरह लग रहा है यहां पे कार्यक्रम चल रहा है।

यह रात का दृश्य है यहां लोग खाना खाने आते हैं।

यह एक हाईवे का दृश्य है ऊपर से फ्लायओवर जा रहा है।

ऊपर क्यूब शेप में सीमेंट से बना हुआ है ये देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जहां झालर मिलती है।